देख लीजिये मेन रोड दिख रहा है।

यहाँ पे खाना पीना का सुविधा सब कुछ है प्लेट है।

जमीन दिख रहा है सब कुछ दिख रहा है ।

यह पे आदमी है बहुत तार फसे है।

एक घर है सब है।

तार है और अलबेस्टर है।

और यहाँ पे गमला भी लगा हुआ है देख सकते हैं।

हम हैदिख रहै है यहाँ पे देख सकते हैं।

न नारयल का पेड़ दिख रहा है बाइक दिख रहा है। यहाँ पे पांच छे ठो दिख रहा है स्कूटी दिख रहा है। यहाँ पे देख सकते है।

पेड़-पौधे दिख रहे है जमीन दिख रहे है एक ठो दुकान जैसे दिख रहे है यहाँ पे--

जमीन दिख रहा है गार्डन है एक ठो इ देख लीजिये पहले तो --

एक ठो ऑटो है ऑटो में एक ठो --